वेज नॉन वेज दोनों खाना मिलता है यहॉं। बहुत ही अच्छा होटल है।

ये ऑफिस है। कार्यालय मधुपुर नगर परिषद का जिसमें नगर का नगर पंचायत के सभी --

बहुत ही अच्छे करके रखे हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है।

एक ये होटल ये रेस्टोरेंट जैसे लग रहा है टेबल कुर्सी लगे हुए हैं और लाइट भी लगी हुई है बहुत ही अच्छा लाइट डिजाईन लगा हुआ है।